जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं लड़के और दिख रहे हैं जो कि आपस में दोस्त लग रहे हैं यह सभी हमको सेल्फी निकलते हुए नहीं बल्कि पीछे कैमरे से फोटो निकालते हुए दिख रहे। उम--

जैसा हम देख सकते है सामने हमको एक दवाखाना दिखाया जो की नीला दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है खाने में ऐ.सी. लगे हुए जो की --

मशीन दिख रही है जो की एक्सरे मशीन दिख रही है। कि दवा खाने क्लीनिक का फोटो दिखाएं जो की बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमको सामने की पेंटिंग दिख रही जो की बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही सुंदर लग रही है ऊपर हमको छत दिख रही जो वाइट कलर की दिखती है बहुत प्यारी--

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको मस्जिद दिख जो कि हरी कलर की दिख रही जो कि बहुत सुंदर मस्जिद दिख रही है जिस पर लाल कलर की कुतुब मीनार जैसा दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको हॉल दिख रहा है जो मस्जिद का हॉल दिख रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया हॉल लग रहा है।